यल्लो कलर की नंबरप्लेट है काफी बड़ी सी गाड़ी दिखाई दे रही है मुझे इसमें दो जगह फ़ोर्स लगा हुआ दिख रहा है मुझे।

ये एक गारमेंट शॉप दिख रही है यहाँ पे अंदर किसी के केबिन के अंदर शेरवानी टाइप या कुछ रख --